हाई कपड़ा के एगो दुकान बा अलग-अलग डीजायन के कपड़ा बा अलग-अलग मे सजावल बा एमे लेडीजे के कपड़ा मिलता।

हम एकरा जीना जे पूजा करन स जा त देखा तारन टाइल्स लगावल बा हई जे दूनू बगल से ब्लैक ब्लैक के चिन्हा बा जा अ निचे गोल सब पा बइठावल बाड़े एजा अ ऊपर देखा निचे हाथ में रखले बाड़ी बसूली --

घर के मैदान बा | तीन गो विकेट बा इहां उहां | ऊपर से किलि रखल बा | चिन्हा पारल बा उजर से अ चिक्कन बा मैदान दूनू बगल से घास बा |